यह टेबल पर राधा क्रिसन की मूर्ति पड़ी है।

यह पार्क की तस्वीर है पार्क में एक आदमी खड़ा है।

सारे गमले अलग अलग कलर के है इसका रंग लाल पीला है इसके--

इस पार्क में काफी रिंग्स लगे हुए हैं उस के पीछे काफी वृक्ष लगे हुए हैं।

इसके सामने काफी मिट्टी का ढेर लगा--

इस शॉप पर काफी सारी मछलियां रखी हुई हैं यहां पर काफी लोग--